ये दृश्य एक बिल्डिंग का दृश्य है जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है इसकी दीवार सफे़द रंग की ही ये घर--

लोग दिखाई दे रहे हैं दुकान के बाहर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

वहीं एक दरवाजे पे कुछ गेंदे की मालाए टांगी हुई हें। बाहर की और कुछ बलुंस भी टंगे हुवे हें।

टेस्टी टेस्टी मिठाई हमें दिखाई दे रही हैं। मिठाई के साथ-साथ यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स आइस्क्रीम और भी बहुत तरह की चीजें मिलती हैं।